यहां पर ये एक चाऊमीन बर्गर मोमोज की दुकान दिख रही --

जिसमें यहां पर बहोत बड़ी बैठक बनी हुई है जिसमें यहां पर बहोत सारी खाटे पड़ी हुई है।

और यहां पर मस्जिद में के आगे एक गेट भी लगा हुआ है।

जारियां लिखा हुआ है एक बोर्ड पर।

दिख रही हैं कुर्सी यहां पर एक टेबल दिख रही--

यहां पे ये एक बैंक दिख रहा है जिसमें ये अभी नया खुला है।

और यहां पर पंखे भी लगे हुए हैं लाइटें भी लगी हुई हैं।

और यहां पर पेड़ पौधे गमले भी धरे हुए हैं।

और यहां पर लाइटे भी लगी हुई है।

और यहां पर मस्जिद में एक गेट भी लगा हुआ है।

और हमे ये फूल भी दिख रहे हैं।